शादी-ब्याह या किसी को देने के लिए भी गुलाब का काम --

अभी तो खाली है अभी कुछ भी नही हो रहा यहाँ पर सामने से गेट बंद है आदमी एक खड़ा है।

यह लम्बा बिल्डिंग है। जहाँ के बहुत सारा कमरा नजर आ रहा है।